ये एक बहुत बड़ा सा जगह है जहाँ पे कुआं बना हुआ है।

कटिंग के आगे काटा गया है और डिज़ाइन दिया गया बहुत से लोग हैं जो आसपास में खड़े हैं और हरे भरे पेड़ पौधे हैं बहुत सारे।

दीवाल पे एक बड़ा सा पोस्टर फोटो टांगा गया और एक गिटार रखा हुआ है और योगा का एक फोटो बना हुआ है उसमें।

ये एक बहुत बड़ा सा घर बना हुआ है जहाँ पे शादी का हॉल बना हुआ है जहाँ पे बड़े अच्छे से--

और बड़ा-बड़ा पोल है लाइटें जल रही हैं बहुत सारी।

ये एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड है जहाँ पे हरे भरे घास उगे हुए हैं और आसपास में भी बहुत सारी घेरा हुआ है बहुत सारा।

और हरे भरे आपस में बड़े-बड़े पेड़ हैं लंबे-लंबे बड़े गहने पेड़ हैं सारे लगे हुए हैं।

बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं और ऊपर में भी बहुत सारे बने हुए हैं।

माला टंगा हुआ है अलग-अलग डिज़ाइन के अलग-अलग है और बहुत सारी क्लिप लगी हुई हैं।

कॉरिडोर बना हुआ है जहाँ पे एक लाइन से कुर्सी रखा --

सरकारी दफ्तर है जहाँ पे बहुत सारी लोग गेट के पास बैठे हुए हैं बहुत सारी बाइक रखी हुई और बहुत सारी स्कूटी खड़ी हैं बहुत सारी बाइकें खड़ी हैं एक आदमी खड़ा है।

ये एक बहुत बड़ा सा दुकान है मछलियों का जहाँ पे मछली मिलती है बड़े बड़ा सा एक बड़ा सा--

बहुत से लोग मछली खरीदने के लिए लाइन में लगे हुए हैं।

बहुत सारी लड़कियाँ जो रंग बिरंगे साड़ी पहनी हुई पीला और लाल कलर का वो माथे में गजरी लगा के भी खड़ी हैं।

--बहुत सी लेडीज़ जो खड़ी हैं आसपास में --

कैमरा लगा हुआ है लाइटें लगी हुई हैं और आपस में बड़े-बड़े छोटे-छोटे पेड़-पौधे गमले में लगे हुए हैं।

--हैं और बहुत सारी बैठने की जगह बनी हुई सीट लगी हुई है बैठने के लिए।

हर जगह पे और उससे तारें कनेक्टड --

यह बहुत बड़ा सा दुकान बना है जिसका शटर गिरा हुआ है उसके आसपास में लोग बैठे हुए हैं साइड में भी बहुत से लोग बैठे--

और आइने में देख-देख के बच्चे डांस कर रहे हैं उनके आगे जो सर हैं वो भी डांस बच्चों को सिखा रहे हैं।

गाड़ी आने जाने के साइड में बहुत सारे ए पेड़ पौधों को जलाया गया है लकड़ियों को राखें पड़ी हुई हैं बहुत सारी।

--पे बारहवीं के बच्चे को भी पढ़ाया जाता है मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है आठ ज़ीरो आठ तीन एक ज़ीरो नौ डबल तीन ज़ीरो ।

और बहुत सारे बच्चे हैं जो आइना में देख-देख के डांस कर रहे हैं म्यूज़िक भी बज रहा है और सभी लाइट लगी--

ये एक बहुत बड़ा सा मॉल बना हुआ है जहाँ पे रिसेप्शन डांस स्टूडियो बना हुआ है।

यहाँ पे एक लाइन पंखे लाइट लगी हुई हैं नीचे में कारपेट बिछा हुआ है एक लाइन से तारें--

कागज़ रखा हुआ है डी_जे रखा हुआ है बलून्स से सजाया गया है।

बहुत सारे गमले में फूल सजा के रखा हुआ है एक बड़ा सा स्टार बना उसमें बहुत सारे अलग-अलग डिज़ाइनों में--